जावा में अराय ऑपरेशन्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि
क्लास अरेज को कैसे इंपोर्ट करें और अरेज पर सामान्य ओपरेशन कैसे करें
इस ट्यूटोरिल में हम उपयोग कर रहे हैं उबंटु 1110 जेडीके 16 और इक्लिप्स 370 इस ट्यूटोरिल के लिए आपको जावा में अरेज का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए दिखाइ गई हमारी वेबसाइट पर जाएँ
httpspoken tutorialorg अराय ऑपरेशन्स के लिए मेथड्स क्लास में उपलब्ध होते हैं अरेज कहलाते हैं
उनको एक्सेस करने के लिए हमें क्लास को इंपोर्ट करने की आवश्यकता होती है
यह स्टेटमेंट इम्पोर्ट javautilअरेज सेमीकॉलन के कारण पूरा होता है
हम मेथड को क्लास से एक्सेस कर सकते हैं
हम इसको डॉट और मेथड नाम को जोडकर करते हैं
अतः अरेज डॉट टोस्ट्रिंग अर्थात टोस्ट्रिंग मेथड अरेज क्लास से है
अब इक्लिप्स पर जाएँ
हमने पहले से ही क्लास अरेसडेमो बना दिया है
अब क्लास अरेज को इंपोर्ट करें
इम्पोर्ट स्टेटमेंट को क्लास की परिभाषा से पहले लिखा जाता है
अतः पब्लिक क्लास से पहले टाइप करें इम्पोर्ट javautilअरेज सेमीकॉलन
यह स्टेटमेंट दर्शाता है कि जावा में उतिल नामक पैकेज होता है जो क्लास अरेज को सम्मिलित करता है और यह इंपोर्ट होता है
अब एक अराय को जोडें
मैन फंक्शन में टाइप करें इंट मार्क्स ओपन और क्लोज स्क्वेर ब्रैकेट्स इक्वल टो ब्रैकेट्स में 2 7 5 4 8 अब अरै की स्ट्रिंग दर्शाने के लिए और इसे प्रिंट करने के लिए हम अरैज क्लास में उपलब्ध मेथड का उपयोग करेंगे
अतः टाइप करें स्ट्रिंग एमएसटीआर इक्वल टो अरेज डॉट टोस्ट्रिंग पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस में हम अरै का नाम देंगे जो है मार्क्स अब यह टोस्ट्रिंग मेथड अराय के स्ट्रिंग का वर्णन करेगा
हम अंक प्रिंट करेंगे
अतः टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पैरेंथेसिस में टाइप करें एमएसटीआर अब आउटपुट देखें अतः प्रोग्राम को सेव और रन करें
जैसा हम आउटपुट में देख सकते हैं टोस्ट्रिंग मेथड ने अराय के स्ट्रिंग का वर्णन किया है
अब अराय के एलिमेंट्स को श्रेणीकरण में देखते हैं
अतः लाइन अरेज डॉट टोस्ट्रिंग से पहले टाइप करें अरेज डॉट सोर्ट पैरेंथेसिस में अरै का नाम जो है मार्क्स अतः अरेज क्लास में सोर्ट मेथड इसमें पास किए गए अरै के एलिमेंट्स को श्रेणीबद्ध करता है
अब हम अराय मार्क्स को श्रेणीबद्ध कर रहे हैं और फिर इसके स्ट्रिंग प्रारूप को प्रिंट करेंगे
आउटुपट देखें
सेव और रन करें
हम आउटपुट में देख सकते हैं सोर्ट मेथड अराय को आरोही क्रम में श्रेणीबद्ध करता है
ध्यान दें कि सोर्ट मेथड स्वयं अरै बदलता है
इस प्रकार के श्रेणीकरण को इनप्लेस सॉर्टिंग कहते हैं
इसका मतलब है कि अरै जिसमें एलिमेंट्स सम्मिलित होते हैं वे श्रेणीकरण के परिणाम स्वरूप बदलता है
अगला मेथड हम फिल देखने जा रहे हैं
फिल मेथड दो आर्गुमेंट्स लेता है
श्रेणीकरण लाइन को हटाएँ और टाइप करें अरेज डॉट फिल ब्रैकेट्स में अरै का नाम जो मार्क्स है
यह हमारा पहला आर्गुमेंट्स है और दूसरी वैल्यू जो अराय में लगेगा हम इसे 6 देते हैं और सेमीकॉलन
सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं नाम के अनुसार फिल मेथड दिए गए आर्गुमेंट के साथ जो 6 है अरैज भरता है
हम अगला मेथड कॉपयॉफ देखने जा रहे हैं
हम अरै मार्क्स के सभी एलिमेंट्स को अरै मार्कस्कोपी में कॉपी करने जा रहे हैं
अतः अरेज डॉट फिल को हटाएँ
और टाइप करें इंट मार्कस्कोपी अगली लाइन टाइप करें मार्कस्कोपी अरेज
copyOfमार्क्स 5 यह मेथड दो आर्ग्युमेंट्स लेता है
पहला आर्गुमेंट अराय का नाम है जिससे आप एलिमेंट्स कॉपी करना चाहते हैं जो मार्क्स है
दूसरा एलिमेंट्स की संख्या है यहाँ हम 5 कॉपी करेंगे
फिर अरेज डॉट टोस्ट्रिंग में मार्क्स को मार्क्स कॉपी में बदलें
अब प्रोग्राम को सेव और रन करें
हम देखते हैं कि अरै मार्क्स के एलिमेंट्स अरै मार्कस्कोपी में कॉपी हो जाते हैं
देखते हैं कि यदि हम एलिमेंट्स से कॉपी संख्याओं को बदलें तो क्या होता है
5 को 3 में बदलें
सेव और रन करें
हम देख सकते हैं कि केवल पहले तीन एलिमेंट्स कॉपी होते हैं
देखते हैं कि क्या होता है यदि कॉपी हुए एलिमेंट्स की संख्या अरै के सभी एलिमेंट्स की संख्या से अधिक है
अतः 3 को 8 से बदलें
प्रोग्राम को सेव और रन करें
हम देख सकते हैं अतिरिक्त एलिमेंट्स डिफॉल्ट वैल्यू सेट करता है जो 0 है
आगे हम देखेंगे कि वैल्यूज की रैंज को कैसे कॉपी करें
अतः कॉपयॉफ को कॉपीयोफ्रेंज से और 8 को 1 4 से बदलें
यह मेथड सभी एलिमेंट्स को शुरुवाती इंडेक्स 1 और इंडेक्स 3 तक कॉपी करता है
सेव औऱ रन करें
हम देख सकते हैं कि एलिमेंट्स इंडेक्स 1 से 3 तक कॉपी हो गये हैं
ध्यान दें कि हमने 14 अपने आर्गुमेंट्स के रूप में दिया है
लेकिन फिर भी इंडेक्स 4 के एलिमेंट कॉपी नहीं होता है
केवल इंडेक्स 3 तक एलिमेंट्स कॉपी होते हैं
दिए गए रेंज के एक इंडेक्स पहले रूकता है
अतः यह व्यवहार सुनिश्चित करता है कि रेंजेस की निरंतरता बनी हुई है
0 4 इंडेक्स 0 से इंडेक्स 3 तक सूचित करता है
4 6 इंडेक्स 4 से 5 तक सूचित करेगा
अतः यह इस प्रकार कार्य करता है यदि 0 4 4 6 0 5 इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा क्लास अरैज कैसे इंपोर्ट करें
अरै ऑपरेशन्स कैसे कार्यान्वित करें जैसे टो stringsसोर्ट कॉपी फिल
नियत कार्य के रूप में arraysइक्वल्स मेथड के बारे में पढ़ें और पता करें कि यह क्या करता है